और ज यहाँ लोग दिखाई नही दे रहे यहाँ पेंटिंग भी किया हुआ खिड़की में और घर में वाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ है और देखने से खूबसूरत लग रहा बोरा भी रखा --

यहाँ सुविधा है जो खायेंगे सब मिलेगा देखने से खुबसूरत लग रहा है।